उसका सामने में एक ठो पेड़ लगा हुआ है और दूर में घर नजर आ रहा है।

जिस तस्वीर मे ये नजर आ रहा है की ये एक रेंट हाउस है।

लाइट बल्ब लाइट भी लगाया गया है और उस दीवार में वाइट टाइल्स से बनाया गया है।

जो बहुत सारा लाइट लगाया गया है।

सफेद कलर का दीवार पेंटिंग किया गया है।

और साइड में एक स्टेच्यू है टेबल का ऊपर में भी एक हिरन का माथा रखा हुआ है।

और सामने में ब्लू कलर का एक चमकारिंग गाड़ी पार्किंग बना गया है।

नीचे टाइल्स से बनाया गया है एक फ्लोर और उस साइड में शीशा से लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि ये एक बस है।

मुझे इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि ये एक गेरेज है जो येलो कलर से पेंटिंग किया गया है ये घर को।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

येलो कलर का है अलग अलग कलर का पत्थर यहां में जमा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि एक बिल्डिंग है जहां येलो कलर से पेंटिंग किया गया है।

यहां में इस तरह केस बना हुआ है दूर में भी एक ठो घर बना हुआ है।

ग्रांड ग्राउंड फ्लोर को मिलाके दो फ्लोर है नीचे का फ्लोर दुकान है।

और ये एक बड़ा सा हॉल है जहां में ऊपर में टिना से लगाया हुआ है।

रस्ता का कार्नेर में बहोत सारा लोग जा रहा हैं।

ऑफिस है जहां पर एक बड़ा सा टेबल है उधर एक मॉनिटर है।

इसके बाद दीवार में आईना लगा हुआ हैं आईना के सामने में एक ठो कैलेंडर लगा हुआ हैं।

और डस्टबिन और किचन का सामान सब बेचा जा रहा है।

दीवार में लाइट बल्ब और सीसी कैमरा सब लगाया गया है।